जहाँ पर हम बोहोत ही कलर कलर का बलून देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट और ब्लू कलर बलून भी लगा हुआ है।

घासं लगे हुए हैं जोकि इस घर को बहुत ही अच्छा लुक देता है और इसके साइड एक बौंडरी भी है जो कि घर की कलर से ही मैच करता है।

यह फोटो एक रोड से लिया गया है जहाँ पर की एक मोर का फोटो दिखाते हैं और अगल-बगल बहुत सारे ग्रीन कलर की घाँसे हैं।

जोकि यह दूकान मे ये बताता हैं की यहाँ पर ये समान सब मिलता है और यहां पर मैगी का भी पिक्चर है।

एक फ्लावर दुकान हे जहाँ पर की बहोत ही अलग अलग कलर की फ्लावर्स है और सब को अच्छे से डेडेकोरेट किया गया है ।